एक कार के सामने दो व्यक्ति खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति बाएं --

और हॉल में बहुत सारे बच्चे डांस सीख रहे हैं।